कुछ ब्यक्ति बॉल ली बॉल बॉल से खेलते हुए भी नजर आ रहे हैं।

यह एक किराना शॉप है इस इसमें एक काउंटर लगा हुआ है काउंटर के अंदर भी सामान रखा हुआ दिखाई दे रहा है।

एक लड़की माता बनी हुई बैठी दिखाई दे रही वो विन--

एल_सी_डी प्रोजेक्टर लगा हुआ है जिसमें काफी कुछ तस्वीरें बनी हुई सी भी दिख रही है।

यह एक वाटर पार्क है। वाटर पार्क में एक पंप भी वाटर पार्क के अंदर एक पाइप पंप भी रखा हुआ है।

स्विमिंग पूल के बाहर एक छोटी सी बैठने के लिए कुर्सी भी डाली गई डाली गई हैं और एक बहुत बड़ी बाउंड्री बनाई गई हैं दो--

जिसमें एल_ई_डी वगैरह दिखाई दे रही है कुछ फैंस भी लगे हुए दिखाई दे रहे हैं।

एक ट्रे में कुछ खाने का सामान भी दिखाई दे रहा है उस--

इसमें बाहर रेलिंग लगी हुई है रेलिंग पे दो व्यक्ति भी नजर आ रहे हैं जिनकी फीस फेस फेस दिखाई नहीं दे रहे हैं।

काफी व्यक्ति इधर से उधर आ आते जाते हुए दिखाई दे रहे हैं।

यह एक मोबाइल की शॉप है जिसमें एलेल सामने घड़ी भी टंगी हुई दिखाई दे रही एक एल_ई_डी भी लगी है।

ओ एक शेल्फ लगा हुआ है जिसके शेल्फ के ऊपर मोबाइल दिख रहे बीच में मोबाइल दिख रहे--

जैसे कुछ कपड़ों के ऊपर दो चिट भी नैन चिट भी लगी हुई है।

जिसमें काफी सारी ये हरे हरे पौधे दिखाई दे रहे हैं घास भी दिखाई दे रही है।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

यह एक गार्डन है गार्डन में एक लंबी व्हाइट कलर की लाइट रॉड भी दिखाई दे रही है का पूरे में जाली लगी हुई--

साइड में शूज वगैरा लगे हैं एक साइड में स्लीपर वगैरा दिखाई दे रहे --

और कुछ डिजाइन जैसे बनी हुई दिख रही हैं कि दीवाल के नीचे से हरी हरी घास कुछ पीली पीली सी भी घास दिखाई दे रही है एक छोटा सा पत्थर भी दिख रहा है।

यह एक बस स्टैंड है जिसमें बसे भी बस ये तीन बसें खड़ी हुई दिखाई दे रही हैं लाइट्स भी हैं फैन भी लगे हुए हैं।

जगह जगह पर बलू बैलून डले हुए हैं काफी सारी कुर्सियां भी सामने दिख रही हैं।

यह एक रोड है रोड पर एरोप्लेन खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है।

और रोड के उस उस साइड में काफी सारी काफी सारी हरी हरी घास और कुछ पत्थर पत्थर जैसी टीले भी दिखाई दे रहे और एयरोप्लेन में लाइट्स भी ऑन है।

एक झंडा भी दिखाई दे रहा है मंदिर के अंदर माता रानी की मूर्ति बिराजी हुई--

नाव में भीम वगैरा की कार्टून भी दिखाई दे रहे है और दो मछलियां भी दिखाई दे रही है।

बरामदे के बाहर एक पेड़ लगा हुआ दिखाई दे रहा है जिसमें हरे हरे पत्ते भी दिख रहे हैं।